एक ट्रेन खड़ी हुई है रेल की गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे खाने के कुछ चीजों वाला बेचता हुआ--

इस चित्र मे हम देखेंगे तो हमको ऊपर की तरफ आसमान नजर आ रहा है।

इस चित्र मे हम देखेंगे तो यहा पे हमको एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहापे सोलापुर का दिखाई दे रहा है। याहा पे ट्वेन्टी करके टाइम भी बथाई दे रहा है और हम यहा देखेंगे तो हमको यहा पे ऑटो भी नजर आ रहा है और ये रस्ते मे बारिश भी पड रही है।

और हम यहा देखेगें तो ये पार्क जैसा दिखाई यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है।

इस चित्र मे हम देखेंगे तो हमको उपर कि तरफ आसमान दिखाई दे रहा है और हम नीचे कि तरफ देखेंगे तो हमको यहा पे पेड़ पत--

पीछे की तरफ हमको झाड पत्ते लिखाई दे रहे है और पीछे की तरफ हम देखेंगे तो हमको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ ग्रास --